यहाँ कुछ फ्लावर्स दिख रहे है जैसे वाइट कलर के और छोटे-छोटे पौधे भी लगाए गए है ।

और इनके हाथ ऊपर है और यह दीवाल के साइड इनका मूँह है।

फलो की दूकान दिख रही है वहाँ भी भोत सारे फल दिख रहे है वहाँ बनाना भी रखे हुए दिख रहे है।

यहाँ पे बहोत सारे बीच में बड़े-बड़े खम्भे दिख रहे है खम्भों में लाइट लगे हुए है।

यह एक संभागउक्त कार्यालय दिख रहा है कार्यालय के सामने एक लोहे का खम्बा लगा हुआ है जिसमे बिजली के तार गए है।

यहाँ एक संजय सर्विसिंग पार्ट है यहाँ पे गाड़ियाँ सुधारी जाती है यहाँ सामने कुछ पाइप भी पड़े हुए है यहाँ पे बाइक --

ऊपर बादल वाइट कलर के दिख रहे है यहाँ मंदिर के शेप में जो खिड़कियाँ बनी हुई है वह खुली दिख रही है।

यहाँ पे एक गार्डन है गार्डन में एक किसी महापुरुष की मूर्ति दिख रही है ब्लैक कलर का गेट भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ--

यहाँ पे आस पास बहोत सारी गाड़िया खड़ी हुई है कुछ फोर व्हीलर भी खड़ी है यहाँ पे आस-पास पेड़ दिख रहे है यहाँ एक गेट बना हुआ है।

यहाँ बहुत सारे ऊपर कलर में मोबाइल रखे है जैसे यहाँ पे वाइट रेड कलर का खड्डा दिख रहा है नीचे पिंक कलर का खड्डा दिख रहा है।

यह एक ग्राउंड है यहाँ पे ग्रीन कलर में स्टेज सजा हुआ है यहाँ पे लाइट लगे हुए हैं ।

यहाँ एक येल्लो कलर का गेट लगा हुआ है एक आदमी अंदर दिख रहा है कुछ व्यक्ति बाहर खड़े हुए है जिन्होंने टोपी लगाई हुई है।

बाइक भी खड़ी हुई है सामने एक यहाँ एक ईट की झोपड़ी भी दिख रही है।

एक बुक्स का शोरूम दिख रहा है यहाँ बहुत सारी किताबें दिख़ रही है एक लाइन में --

यह एक मॉल दिख रहा है मॉल में यहाँ पे ब्लैक कलर की जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई है अन्दर ये एक छोटा- सा पेड़ भी रखा गया है इलेक्टिक सिढी हैं ।

तोरन भी दिख रही है यहाँ पर एक रेड कलर का फ्लॉवर दिख रहा है यहाँ काउंटर के ऊपर कुछ सीढ़िया--